तस्वीर में सामने एक व्यक्ति बैठा दिखाई दे रहा हैऔर पीछे दो व्यक्ति नजर आ रहे है एक जो बाल काट रहा हैऔर दूसरा --

इस तस्वीर में सामने एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो सैलून दुकान के बाहार खड़ा है पीछे बहत सारे पोस्टर्स भी लगे हैं सामने एक सिसे का गेट है।

इस तस्वीर में सामने एक व्यक्ति नजर आ रहा है। जो सफेद रंग का टी शर्ट पहन कर और ग्रीन कैप पहना है। पीछे वॉल पे रेड --

जीसस क्राइस का क्रॉस भी बना है सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो सफेद रंग का कपड़ा और फूल के माला पहने हैं। और साइड में कुछ लोग बैठे हैं।

मूर्ति का कलर ब्राउन है सामने एक पेड़ भी बना है। यह भी मट्टी का बना है।